एक गैराज़ में कार खड़ी हुई है कार के बगल एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

एक मैदान जिसमे कुछ लोग क्रिकेट खेलते हुए देख रहे है दो व्यक्ति जिनके पास बल्ले है हर एक व्यक्ति जो की बोलिंग कर रहे है।

एक शॉप जिसका जिसमें ओनिडा टाटा स्काइ का बोर्ड लगा हुआ --

झील के उस पार दो बड़ी-बड़ी पहाड़े हैं झील के बीचों-बीच पानी से भरा हुआ हैं।

एक सभा यहाँ पर कुछ लोग टेबल पे बैठे हुए हैं सभी लोग सफेद रंग का ड्रे --

एक फुराना टूटा-फूटा किला जो अ अस्त व्यस्त पडा है।